और उपर लाइटिंगस भी लगी हुई है और दीवारो पर आजु बाजू सब जगह लाइटिंगस हुई है।

मूर्ति हैं यहा पर दोनों की मूर्ति हैं उसके पीछे एक लाल रंग की दीवार हैं।

ये एक कपड़ों की दुकान है यहां बहोत सारे कपड़े लगे हुए हैं।

यहाँ पर नीचे टाइल्स दिख रहे हैं और यहाँ पर हयशटयाग आय म एयरटेल लिखे हुआ हैं।

उसके सामने पिली और उधि कुड्सिया रखी हुई है और उपर बड़े बड़े लाइट --

चीजे रखी हुई है और उधर एक दरवाजा भी है लकड़ी --

यहा चारो तरफ भरी भरी झाड़े नजर आ रही है ई सामने एक खम्बा है।

खंभे पर लाल रंग की रस्सी लगाई गई है और यहां पर बीच में एक छोटा सा कट्टा है।

और दूसरी दीवारों पर फैंस लगे हुए हैं नीचे टेबल्स और कुर्सियां हैं ये टेबल्स का रंग लाल और सफेद है।

और ये एक सफ़ेद रंग की फैक्ट्री है उसके अंदर से एक टेम्पू आरही है उसके बाजु एक कार भी है।

यहा पर एक रोड दिख रहा है निचे और अन्दर कुछ लोग जा रहे है ।

डेरी मिल्क के चॉकलेट की पन्नी का रंग बैंगनी है और किटकैट चॉकलेट के पन्नी का रंग लाल रंग है।

उसके बाजु एक बिल्डिंग भी है बिल्डिंग में बहोत सारे कलुमंस है यहाँ पर अः आयरन चुडिया भी लगे हुए है।

हांडियों पे नीचे हरे रंग का और ऊपर सफेद रंग का डिजाइन किया गया है।

सीलिंग के सामने एक बढ़ईसी नदी भी हैं उसके बाजू कमान जैसे छोटा मंदिर भी हैं।

और इधर छत्रिय जेसे टेंट मारे हुए है यहा पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है।

अपार्टमेंट का रंग क्रीम कलर का है और सामने छत्रिया है।

यहां पर एक बड़ा खुला मैदान है यहां पर खेलने की चीजे हैं बच्चों की ये एक गार्डन है यहां झूले भी है।